देख सकते है कितना अच्छा है और यहाँ पे ढेर सारा आदमी हैं जो अंदर जा रहा है देख सकते है कितना सुंदर लग रहा है देखने में।

और यहाँ पे सब्जी की दुकान के पास कोई नहीं है इसलिए खाली है ड सब कोठा कोठा में रखा हुआ है।